यहाँ पे एक अ शोरूम है बाइक का जहाँ पर बहुत सारी बाइक रखी हुई है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी है।

और बलून लगे हुए है यहाँ के खम्भों पर ग्राउंड मे घास लगी हुई है और ग्राउंड मे कुछ लोग रनिंग कर रहे है पेड़ लगे है ।

और यहाँ पे पेड़ अ सूखे भी है कुछ पेड़ो की पत्तिया और पेड़ नज़र आ रहे है।

पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ से --

एप्पल रखा हुआ है मैंगो रखा हुआ है स्ट्रॉबेर्री भी है और ये नीले कलर और लाल कलर के रेटून में रखे हुए है।

और यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ जो है बहुत घने है पेड़ो की पत्तियों का डार्क हरा कलर दिखाई दे रहा है।

ट्रेड मिल पर एक इंसान खड़ा हुआ है और यहाँ मशीन पे बैठा हुआ है सामने --

ये एक अ बस स्टॉप है जहाँ पे बहुत सारी बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और नीचे कुछ गमले में पौधे लगे है सुखी पत्तियों का कचरा पड़ा हुआ है पेड़ दिखाई दे रहे है पीछे --

यहाँ पे पानी के फवारे चल रहे है और ऊपर के साइड पे लाइट जल रही है पानी का बैकग्राउंड नीला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बगीचा है और बगीचे है मे फूल लगे हुए है सफेद गुलाबी और पिले और बहोत सारी घास लगी हुई है।

खाने का स्टॉल लगा हुआ है कुछ पौधे लगे हुए है।